तीन-चार लड़के हैं। पेपर वेपर दे रहे हैं। एक लड़की भी बैठी है। बहोत ही अच्छा गेट है। बहोत बड़ा जगह है। देखने में बहोत ही सुन्दर लग रहा है। बहोत ही --

ये कही का माकन है। कम कई मंजिला माकन है। बहुत बड़ा माकन है। यहाँ आगे भी बहुत जगह है। बहुत अच्छा जगह है। यहाँ कंभा भा भी लगा है। अगल बगल गेट भी लगा है। यहाँ कपड़ा वगेरा भी फैलाया गया हैं। बहुत सुन्दर जगह है देखने --

यहाँ बहुत बढ़िया लड़की व्यायाम कर रही हैं सब। बहुत ही अच्छा जगह है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। व्यायाम बहुत अच्छे से कर रही हैं सब। व्यायाम में बहुत मेहनत लग रहा है। बहुत ही अच्छा है। लड़कियां तीन लड़किया हैं सब बहुत अच्छा कर रही है दिखने मे ब --